इस तस्वीर पर हमें एक नदी का छोड़ दिखाई दे रहा है जिसमें एक बड़ी सी नौका भी खड़ी हुई है उसके छोर पर काफी सारे पत्थर है।

तस्वीर पर हमें एक किराना की दुकान दिखाई दे रही है जिसमें हमे काफी सारा सामान भरा हुआ भी नजर आ रहा।

यह तस्वीर एक डेरी के सामने वाली ने से ली गई है जहां पे हमे दुध दही मठ्ठा आइसक्रीम व आदि चीज़े हमे उपलब्ध रहती है।